यहां पर भी हम देख सकते है कि यहां पर जो है कुछ बच्चे है छोटे-छोटे जो कि अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे है। यहां कुछ डांस फॉर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे है जो कि देखने में काफी ही अच्छा लग रहा है।

पर आस-पास का जो माहौल है शायद से बड़ा ही गन्दा-सा लग रहा है। देख के तो मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई कचरे-वगेरे का जगह है।

यह शायद से किसी डैम के पास की रोड हैं जहा पर की हम देख सकते हैं ऊपर मैं कुछ डैम का प्रोसीजर हैं।

यहाँ पर भी हम देख सकते हैं की उड़ान डांस क्लासेज की कोई एक कॉम्पीटीशन चल रही हैं। जहाँ पर के दो बच्चे हैं और वह अपने डांस से लोगो जो है एंटरटेन किये जा रहे हैं।

क्या हम देख सकते हैं की आस-पास मैं पूरा पानी-पानी भरा हुआ हैं और बीच मैं जो हैं कुछ गार्डन्स टाइप एरिया --

लेकिन यहाँ पर भी एक एयरपोर्ट का ही विज़न हैं जहां पर की लोग जो है मतलब एयरपोर्ट में अ जो लोड होने वाले --

कुछ अ व्हीकल्स वहाँ पर प्रेजंट हैं।

मुझे नहीं पता है कि कितने व्हेरायटीस के प्लांट्स और ट्रीस है बट दै आर लूकिंग लिटरली वेरी ब्यूटीफुल ।

यहाँ पर भी सोफे के साथ डेकोरेशन किया गया हैं। सोफे को रखा गया है और स्टेज को डेकोर किया गया है।

और यहाँ हम साइड मैं देख भी सकते हैं की एक इंसान हैं जोकि ओलरेडी अभी भी डेकोरेशन को कर रहा है जोकि शायद से स्टेज की डेकोरेशन ओलरेडी कम्पलीट हो चुकी है। जो के देखने मैं बोहोत ही अच्छा लग रहा हैं।

एक तो पेंडुलम मुझे दिखाई दे रहा है जो कि पेंडुलम लटकता हुआ आँख से दिख रहा है और बाकि लोग जो है आपस में इस चीज के बारे में डिस्कस भी कर रहे है की इक्ज़क्ट्ली वो क्या शो कर रहा है।

ये सारी अब मर चुकी है और जो शॉप कीपर है अब उसे जो है बेचने की पूरी तरह से तैयारी कर चूका है इवेन वो बेचने के लिए बैठ चूका है।

और ये आज़ादी का कोई मोह अ पचहत्तरवां महोत्सव मनाने की जगह पे इसको लिया गया है ।